मुझे इस फोटो में चट्टान दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक कुत्ता दिखाई दे रहा है।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

मुझे फोटो में एक नल दिखाई दे रहा है।

मुझे फोटो में सड़क दिखाई दे र--

मुझे इस फोटो में एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में सड़क दिखाई दे रही है। मुझे इस फोटो में एक गा--